यह कोई खेत है जिसमें बहुत लोग कुछ लोग खेती कर रहे हैं।

जिसमें स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

इस चित्र में कोई बौद्धिक--

इस फोटो में बहुत सारे आलू दिख रहे हैं।

यह कोई होटल का रूम लग रहा है जिसमें साइड में दो तीन चेयर्स लगी हुई है कुछ पॉलिथीनस रखी हुई है ग्रीन और पिंक कलर में।

गाड़ी और स्कूटी दिख रही है बाइक दिख रहा है।

ए_सी लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं।

और साइड में भी छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है पौधे लगे हुए हैं।

पर्दे लगे हुए है एंबुलेंस दिख रही है मेरे को।